यह एक राशन की दुकान है जिसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ है जोकि पेपर पढ़ रहा है और जिसने सफेद कलर की शर्ट पहन रही रखी हुई हैं।

इसने ऊपर सामने एक वाइट कलर का बोर्ड नजर आ रहा है जिसपे सर उनके पढ़ा रहे है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है लड़के -लड़कियों के हाथ में कॉपी और पेन हैं।

ऊपर धूप दिख रहे हैं और नीचे खाई है उसके असर -बसल पौधे लगे हुए हैं घास भी लगी हुई है।

ये एक सड़क का फोटो हे वह सामने एक यह ब-बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही हे उसके सामने लोडिंग ऑटो खड़ा हुआ हे।

ये पहाड़ी इलाके का रास्ता दिख रहा है इसमें ऊपर बहुत सारे पहाड़ पेड़ दिख रहे हैं।

और फिर पानी जो है वो चट्टानों के ऊपर से बेहता हुआ आ रहा है ऊपर हल्की हल्की धूप दिख रही है पानी बैहता हुआ आ रहा हैं।

यहाँ पे कथाई कलर की बहुत बड़ी चठान पहाड़ बना हुआ है चटान बनी हुई है उसके ऊपर से पानी झरना इस तरह से पानी झरना गिर रहा हैं ।

ये एक सड़क का फोटो है जहाँ पे दो गा-भैसे जाती हुई दिख रही हैं।